और इसके अगल-बगल में बहुत हरा-भरा भी है और इसकी --

स्वाद होने के कारण लोग बहुत दूर-दूर से पिने के लिए आते है ।

और कुछ लोग पीने के लिए बैठे हुए है।